बहुत बड़का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बाएगो कार खड़ा बा हई लागता गौतम ग्रीन गॉर्डन बा।

कई गो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लउकता एहिजाआ उ मार स्ट्रीट लाइट कुल लगल बा चारो ओर।

इहो कोनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बा लेकिन जादा ऊंचा नइखे इ बिल्डिंग एरिया वाला कुल पिलर देके बनल बा ऊपर।

अ देखअ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बा कई ताल्ला बिस्तल्ला लगत बनल बा। हमार बालकनी आलकनी देखे में कितना सुंदर लाग --

पूरा टेंट कितना बढ़िया पीला रंग से एकदम आसमान जइसन बनल बा। कितना निक लागता देखे में पंडित जी पूजा किए फुल उल से पूरा सजावल गईल बा।

कितना ऊपर तक जात सरके वाला नीचे तक बनेला फंटेसिया वॉटर पार्क बड़े सुंदर बा जरूर बनारस आव तो एक बार आव --

नहा मन भर आ पीछे दू डेग बनल बा हरा भरा वातावरण आसमान आ जमीन एक रंग के रंगल --